नदी किनारे एक युवक अपनी नाव को यहाँ पर मिट्टी में से अलग करते हुए ताकि वह अपनी नाव को पानी में ले जा सके।

स्कूल नजर आ रही हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्कूल जिसकी दीवारों पर काफी सारी पेन्टिंग कर रखी हैं।

और मेरे अंदाजे से कोई हॉस्पिटल हो सकता हैं अस्पताल।

तीन चार पाँच छै ऊंचे माले की बिल्डिंग जो की बनाई जा रही है।